दिखाई दे रही है यहाँ पर लोहे की बोहोत सारी राड़ दिखाई दे रही हैं यहाँ सामने बुल डोजर के दो पहियें दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ यहां अ कलर के और लाल कलर के परदे लगे हुए हैं यहाँ लाइट जल रही हैं सफ़ेद कलर की--

वह सामने सूरज दिखाई दे रहा है। ये एक लोहे एक टावर दिखाई दे रहा है यहाँ --

ने यह एक आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोहे के बिम रखे हुए हैं यहाँ बोहत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैं जो पीले कलर की टोपी लगाए हुए हैं | यहाँ पर सामने कागज़ रखा हुआ है।

यहाँ पर बड़े-बड़े झाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उजाला दिखाई दे रहा है।